यह एक हॉस्पिटल है जिसमें की पे दो पेशेंट लेटे हुए हैं एक को तो लग रही एक उल्टा करके लेटा हुआ है एंड मशीन रखी हुई है।

पीछे एक बिल्डिंग है जो की बन रही है।

ये मुझे सड़क दिखाई दे रही है सड़क में दो बच्चे जा रहे हैं।

एक कार दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पत्थरों के चारों बीच में तालाब में पानी रखा हुआ है।

उसके अगल बगल झड़ियां है पेड़ पौधे इत्यादि।

पीछे कुछ पेड़ से सूखे हुए है कुछ हरे पेड़ से झाड़ियां है उनके पीछे एक घर बना हुआ है।

छोटी छोटी झाड़ियां है पेड़ पौधे हैं।

बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है आदर्श दर्द निवारण एवं का प्रा प्राथमिक मुख्य सेवा केंद्र है ये।

यह कोई एक बिल्डिंग दिखाइ दिखाई दे रही है जिसके सामने कार खड़ी हुई है।